पूरा बस्ती घना जंगल के बीच है।

इस फोटो में एक गाड़ी का पिक्चर है उसका रंग काला है।

पिछे पौधे वाले हरे रंग के फेन्स लगे है।

इस दुकान में लॉन्ग और शॉट पैंट्स रखे हैं।

बोर्ड पर डिपार्टमेंटल स्टोर लिखा हुआ है।

आगे तीन गारिया पार्क है मकान पर बहुत सारा वस्टु रखे हैं।

समुद्र बड़ा और ग्रीन है।

व्यक्ति सीढ़ी पर खड़ा हाथ में कुछ लिए हैं।

इस पिक्चर पर घर का फोटो है।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

बहुत सारे गोभीया उग रहे है उसका रंग हरा है।

ये कच्चू का पौधा भी है।

इस फोटो में एक घर का चित्र है गेट पर बैनर में वेलकम लिखा हुआ चिपकाया है।

थोड़ा ऊंचा सुखा मिट्टी है उस पर घास पेड़ पौधे है।

पानी बरा है दो पहारो के बीच बह रही है।